अ है और पीछे में बिल्डिंग दिख रहा है तीन चार गाड़ियां पार्क की हुई है पार्किंग के लिए जगह सही है बहोत खुलासा है।

सामने में एक गेट दिख रहा है और एंट्री का गेट अह है।

वो स्वादिष्ट भोजन का उत्पन्न प्रबंध यह कोई एक का यह टाइप का है रसोई टाइप का मतलब एक का रेस्टोरेंट टाइप का है खाने की जगह --

ये एक घर जैसा दिख रहा है आ--

और पीछे भी कुछ-कुछ बिल्डिंग दिख रही है और छोटा-छोटा --

यहाँ पर ये एक अ अ दुकान के बाहर साइड का पिक्चर समझ में आ रहा है --

एक घर टाइप का है उसके नीचे ये दुकान है एक स्टेशनरी शॉप और एक प्रिंटिंग प्रेस का बोर्ड दिख रा है यहां पर।

और पीछे का जो सामने का जो एंबिएंस है जो वेटिंग एरिया है बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है।

सामने में एक लड़का बैठा हुआ है और आस पास में बहोत सारी चीजे टांगाइ हुई है कुछ चीजे का काउंटर पे रखी हुई है।

सामने में एक गार्डन एरिया जैसा कुछ बना हुआ है यहां पे कुछ कुछ पौधे है।

सफेद रंग का और उसमें अ हरा रंग का चरखा टाइप का बना हुआ है।